पेड़-पौधे भी नज़र आ रहे हैं छोटे-छोटे घास और मिट्टी भी दिख रही हैं यहाँ कुछ जानवर कुछ घास खा रहे हैं।

यह मेला है जो बहोत सुंदर तरीके से लगाया गया है लाइट है रात का समय हो रहा है।

ये बिल्डिंग हैं पानी हैं मिट्टी हैं फत्तर है छोटी-छोटी घास हैं साइकिल हैं सीमेंट - सीमेंट की बाउंड्री बनी हुई हैं ईंटे हैं।

फ्लावर्स है नीचे एक चटाई बिछी हुई है फूलो की माला है चक्र है छोटी छोटी मूर्ति है कलश है।

यह एक तालाब है नाँव है टावर है आसमान है सूरज है।